eclipse eclipse के साथ शुरूआत के इस spoken tutorial में आपका स्वागत हैं
इस tutorial में हम सीखने जा रहे हैं
eclipse में कैसे project तैयार करें और class जोड़ें
java program कैसे लिखें और
eclipse में java program कैसे रन करें
इस tutorial के लिए हम उपयोग कर रहे हैं :
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपके पास
आपके system पर eclipse संस्थापित होना चाहिए
यदि नहीं तो संबंधित tutorial के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
eclipse एक integrated development environment है
यह एक tool है जिस पर आसानी से लिख सकते हैं debug कर सकते हैं और java programs रन कर सकते हैं
अब eclipse खोलें
alt f2 दबाएं और dialog box में eclipse type करें और enter दबाएं
हमें एक workspace launcher dialog box मिलता हैं
workspace एक location स्थान है जहां आपके project से संबंधित सभी data और आपके eclipse से संबंधित files संग्रहित होती हैं
यहाँ एक स्थान पहले से ही है जो default location है
browse सुविधा का उपयोग करके एक अलग directory भी चुनी जा सकती है
अभी के लिए default directory के साथ आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ने के लिए ok पर click करें
आपके पास welcome to eclipse पेज है
workbench पर click करें जो पेज के ऊपरी दाएँ कोने में है
और यहाँ हमारे पास eclipse ide है add एक project जोड़ें
file new पर जाएँ project चुनें
projects की सूची में से java project चुनें
ध्यान दें कि हमारे अधिकतर tutorials के लिए हम java project का उपयोग करेंगे next पर click करें
project नेम में eclipsedemo type करें
एक option पर ध्यान दें जो है use default location
यदि यह option चुनित है तो सभी eclipsedemo project data default workspace में संचित होता है
यदि यह अचयनित है तो browse सुविधा का उपयोग कर एक अलग location को भी चुना जा सकता है
अभी के लिए हम default location स्थान का उपयोग करेंगे
wizard के ठीक नीचे दाएँ कोने में स्थित finish पर click करें
open associated perspective dialog box प्रदर्शित होता है
perspective eclipse में चीजों को व्यवस्थित रखता है
dialog box perspective का सुझाव the रहा है जो java development के लिए अनुकूल है
remember my decision चुनें और yes पर क्लिक करें
यहाँ हमारे पास प्रोजेक्ट के साथ eclipse ide है अब प्रोजेक्ट में एक क्लास जोड़ें
project पर right click करें new पर click करें और class चुनें
class नेम में democlass लिखें
ध्यान दें कि modifiers में हमारे पास दो options हैं public और default
अभी के लिए इसे public रखें
अन्य options की अगले tutorials में चर्चा की जाएगी
और मेथड स्टब्स की सूची में ऑप्शन public static void main चुनें
अन्य ऑप्शन्स की अगले ट्यूटोरियल्स में चर्चा की जाएगी
wizard के ठीक नीचे दाएँ कोने में स्थित finish पर click करें
और यहाँ हमारे पास class फ़ाइल है
ध्यान दें वहाँ कई विभाग हैं इन्हें portlets कहते हैं
हमारे पास package explorer portlet है जो file browser की तरह कार्य करता है
हमारे पास editor portlet है जिसमें हम code लिखेंगे
और outline portlet जो हमें project का पदानुक्रम देता है
प्रत्येक portlet का आकार बदला जा सकता है
minimize button का उपयोग करके उन्हें minimize किया जा सकता है
restore button का उपयोग करके भी उन्हें पुनः संचित किया जा सकता है
अब अन्य portlets को minimize करें और editor पर ध्यान केंद्रित करें
जैसा कि हम देख सकते हैं वहाँ पहले से ही कुछ code है eclipse ने हमारे लिए तैयार किया है
class बनाते समय हमारे द्वारा चुने गये options के आधार पर यहाँ code तैयार हो गया है
add यहाँ एक print statement जोड़ें
type करें system out println hello eclipse
statement के अंत में एक semicolon जोड़ें
file पर क्लिक करके सेव करें और save चुनें
वैकल्पिक रूप से आप shortcut control s का भी उपयोग कर सकते हैं
इस program को रन करने के लिए editor पर दायाँclick करें run as पर जाएँ और java application चुनें
हम देखते हैं कि यदि कुछ printed होता है तो output console output दर्शाता है
यदि हमारे code में समस्या थी तो समस्याओं को problemsportlet पर दिखाया गया होता
यहाँ हैं कि आप eclipse में java program कैसे लिखें और रन करें
इसी के साथ हम tutorial के अंत में आ गये हैं
इस tutorial में हमने सीखा कि eclipse में project कैसे तैयार करें और class कैसे जोड़ें कैसे एक java source code लिखें और eclipse में java program कैसे in करें
इस tutorial के लिए नियत कार्य के रूप में display नामक एक project तैयार करें
और display project में welcome नामक class जोड़ें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
spoken tutorial project team
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं
online test pass करने वालो को प्रमाणपत्र भी देती हैं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
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आप से विदा लेता हूँ धन्यवाद